पोस्ट ऑफिस के बाहर एक क्लीयरेंस का बॉक्स भी लगा हुआ है।

आदमी ने मास्क भी लगाया हुआ है।

पेशेंट के बैठने के लिए काफी बड़ी ब्ल्यू कलर की चेयर रखी हुई हैं।

क्रेन का कलर येलो है।